दुकान है ज बच्चन के कपड़ा बिकत है जो हेंगर है।

लाल हैं थोर नीले हैं हरे हैं सफ़ेद हैं। सब कलर दे --